यह एक मारुति सुजुकी की कार है।

फोटो में एक आदमी दिख रहा है जिसने व्हाइट शर्ट डाल रखी है।

इसमें एक आदमी दिखाई दे रहा है।

जिसने नीले कलर की शर्ट पेहनी है।